और इसके पैर रेड रेड हैं।

ये पटरी का सिन है। इस पटरी पर एक ट्रेन खड़ी है।

जो आदमी का मुंह झरने की साइड है।